एक दुकान है जो कि दुकान का शटर खुला हुआ है और एक लाइट भी दिख रहे है जो कि दिखने में बहुत मस्त है यहां पे स्टेप भी है जो कुछ दूसरा-तीसरा स्टेप पे चप्पल एक --

एक घर है जो ये घर का डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा है दो तीन रंग से रंग किया हुआ हैं जोकि देखने मे बहुतअच्छा लगरहाहैखिड़की भी हैं जोकि जाफड़ी जैसी है।